प्लेट में ले के खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग कुर्सी पर बैठ के खाना खा रहे हैं कुछ लोग खड़े हो के खाना खा रहे हैं यहाँ कुछ लोग हैं जो खाना परोस रहे हैं।

ये तस्वीर एक हवाई अड्डे की दिखाई दे रही है इसमें हवाई पट्टी दिखाई दे रही है हवाई पट्टी पे एक जहाज दिखाई दे रहा है हवाई जहाज का प्रयोग हम लोग --

ये तस्वीर एक वी टू शॉपिंग मॉल की दिखाई दे रही है ।

ये तस्वीर एक ट्रेवेलर बस की दिखाई दे रही है।